जो की ब्लैक और य येलो कलर का है उसके सामने एक आदमी खड़ा हु --

साइड में एम्पायर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

के साइड में एक और है जिन्होंने भी रेड और ग्रीन कलर की साड़ी पहन कर रखी है माता जी के मूर्ति के पीछे रैलिंग रखी हुई है।

दोनों साइड में आमने-सामने की और तीन-तीन जालियाँ बनी हैं जिसके अंदर मुर्गियों को रखा गया है।

पिलर बने हुए है जो की गोल्डन कलर के है।

कुछ लोग हैं जो खड़े हुए हैंजो लोग दिख रहे है ।

ऊपर वाइट कलर किया हुआ हैजिस में बैलून्स लगे हुए हैं | पिंक कलर के वाइट --

उनके आगे-आगे एक-एक टब रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ खाने की चीजे डली हुई है।

पीछे की ओर एक झाली लगी हुई है उसके पीछे और बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।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

साइड मे एक बंदा बैठा हुआ है जिस के हाथ में एक ढोलक --

और एक लाइट का खम्बा लगा है उसपे इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए --

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप बना हुआ है।

रेड और क्रीम कलर के उसके ऊपर दो बड़े-बड़े डब्बे रखे हुए हैं एक ब्लू कलर का एक ब्लैक --

ये एक बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर जिम बना हुआ है जिम के सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं।

बीच में एक खंभा लगा हुआ है जिसमे दो लाइट्स लगी हुई है आगे की ओर टावर टाइप का बना हुआ है।